और एक एल_ई_डी लगी हुई है काफी जादा साफ सफाई दिखाई दे रही है।

इसे पे कुछ वार पता नहीं क्या लिख रहा है एवरी मेन --

और अंकल ने जींस वगैरा पहन रखी है अब पीछे बुने सारे किताब बुक --

इसमें आयेंगे अंडरगार्मेंट्स है दो लेडीस के है।

जो तांबे की की पीतड की उस्तक बना रखी है तांबे के बर्तन है।

इसमें बाइक वोइक कोई खड़ी सै एक शायद चाय दो की दुकान है।

पानी जाता दिखाई दे लग रिया है इसके साइड में पहाड़ है और--

हर तरह की चीजे इसमें रखी हुई आप देख सकते हैं इसमें घर--

रोड भी आप देख सकते है कितना साफ और सुंदर दिखाई दे रहा--